इसके पीछे भी बहुत सारे फैक्ट्री दिखाई दे रहे हैं।

ये एक दुकान का दृश्य है यहां पर बहुत सारे प्लास्टिक में बैग रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

जो कपबोर्ड में है जो लकड़ी के मदद से बनाए गए हैं।

इसके छत पर बहुत सारे झंडे लगाए गए हैं और करकट से छत बनाया गया है।

दीवाल पर बहोत सारे टेडी टांगे हुए हैं।

सामने एक पोल भी दिखाई दे रहा है।

और वहां पर बहुत सारे लोग बैठे और खड़े भी दिखाई दे रहे हैं सामने की तरफ दो तीन दुकाने दिखाई दे रही हैं।

इसके नीचे एक एंट्री गेट का भी बैनर लगाया गया है।

शादी समारोह का दृश्य है जहां पर सामने पंडाल लगाया गया है।

सामने की तरफ एक किटकैट और कैडबरी डेयरी मिल्क भी और फाइव स्टार लगाया गया है।